जो बिहार में अड़तीस चौवालीस जीरो पांच इसका पिन कोड है कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है भारत सरकार से मान्यता इसे प्राप्त है जय हिन्द ।

यहाँ करनी कर के लिखाया गाया है दोस्त --

देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस्ट घर पे लिखा गया है कॉपी कर के लिखा गया है जो बहुत ही अच्छा है। देखिये यहाँ कुछ कटोरों में ये लोग खा रहें हैं और ये कप में कुछ पानी देखिये पानी का बोतल भी है।

आप यहाँ दिख सकते है की यह एक ग्राउंड जैसा है। यह एक स्टेडियम जैसे लग रहा है। काफी आदमी आये है खेलने के लिया दादा ज्यादा दर संख्या में क्रिकेट खेलने के लिया यहाँ आदमी आये हुए है। चारो तरफ से बैट आदमी पकडे हुए है बॉल तो दिख बॉल तो निचे गिरा हुआ लग रहा है।

जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है बलूंस को दो प्रकार के बैलून बैलून को रखे गए हैं एक तो येलो कलर का लग रहा है और एक ब्लैक कलर का जो काफी सुंदर लग रहा है देखने --

तो तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादी पानी भर गई है। हर घर में देखिये बस भी पार हो नहीं हो पा रहा है कार सब का तो पूरा भर गया हैं आप यहाँ देख सकते हैं।